और बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

गेट पर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे मुझे ग्रीन कलर की घास भी दिखाई दे रही है।